एयरटेल साफ़ है। जिससे लगता है की यह मोबाइल की दुकान है और इसपे --

यह एक बिल्डिंग का दृश्य लग रहा है जो अपने आप में अद्भुत है और पेड़ पौधे से भी है।

आज कल मकान बनवाइए तो फिर पौधो का सही आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे मकान की सुन्दरियाता बढ़ जाये।

और जेसीबी आजकल के आज के समय में जेसीबी ने मानव के काम को आसान कर दिया है।

ये मूर्तियों की दुकान है यहां अलग-अलग मूर्तियां अलग अलग सौंदर्य पर बन रही हैं ये आ देखने के लिए मार्केट में तैयार है।

यह एरोप्लेन हवाई अड्डे का दृश्य लग रहा है। एरोप्लेन से हम यात्रा करते हैं। जहां हम रेलवे या बस से यात्रा बारह घंटे तेरह घंटे पंद्रह घंटे चौबीस घंटे में पूरी करेंगे।

और आप उसे देख कर ही ध्यान में रख कर ही आप कहीं प्रवेश कर सकते हैं।

अ टेनिस बॉल है। अ स्पोर्ट्स शू --

ये डांस क्लास है इसमें बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है।

ये चीजे हमे देखने को मिलती है और इससे हम पहार करते है ऐसा बहुत ही अनुभव् भरा दृश्य होता है जिसके बाद तो सभ ये चीजे करते है।